नमस्कार basics of single dimensional array in awk पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगेawk में arrays
array elements असाइन करना
यह अन्य programming भाषा के arrays से भिन्न कैसे है और एक array के एलिमेंट्स कैसे रेफर करें
हम यह कुछ उदाहरणों के माध्यम से करेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँubuntu linux 1604 operating system और gedit text editor 3201
आप अपनी पसंद के किसी भी text editor का उपयोग कर सकते हैं
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपको हमारी website पर पिछले awk tutorials देखने चाहिए
आपको किसी programming भाषा का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए जैसे c या c ++
यदि नहीं तो हमारी website पर समरूपी tutorials देखें
इस tutorial में उपयोगित files इस tutorial के पेज पर code files link में उपलब्ध हैं कृपया उन्हें डाउनलोड और एक्स्ट्रैक्ट करें
awk में एक array क्या है
elements number या string हो सकते हैं
arrays awk में associative हैं
इसका array है कि प्रत्येक array element एक indexvalue pair है
यह किसी भी any programming भाषा में arrays के समान है
लेकिन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताएं हैं
पहला हमें एक array का उपयोग करने से पहले उसे घोषित करने की आवश्यकता नहीं है
साथ ही यहाँ array कितने elements रखेगा यह निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है
programming भाषा में array index सामान्यतः positive integer होता है
आमतौर पर index 0 से शुरू होता है फिर 1 फिर 2 और इत्यादि
लेकिन awk में index कुछ भी हो सकता हैकोई number या string
यह awk में एक array element असाइन करने का syntax है
यहाँ index एक integer या string हो सकता है
strings को double quotes में लिखा जाना है चाहे यह index name या value हो
इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं
मैंने code पहले ही लिखा है और इसे array _ intro awk के रूप में सेव किया है
यह file player के नीचे code files link में उपलब्ध है कृपया डाउनलोड करें और इसका उपयोग करें
यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पर सप्ताहिक दिन लिया है और इसे begin section में लिखा है
यहाँ array का name day है
मैंने index 1 और value sunday set किया है
इस array element में मैंने index के रूप में string का उपयोग किया है अतः index first के लिए वेल्यू sunday है
पूर्ण array इसी तरह बना है
यहाँ ध्यान दें array elements क्रम में नहीं हैं
awk arrays में index का क्रमबद्ध होना आवश्यक नहीं है
associative array का लाभ यह है कि नए pairs को किसी भी समय जोड़ा जा सकता है
मैं array में day 6 जोड़ता हूँ
आखिरी line के अंत में cursor रखें और enter दबाएं फिर निम्न टाइप करें
file सेव करें
हमने array घोषित कर दिया है लेकिन हमें array element को कैसे रेफर करना चाहिए
विशिष्ट index में एक element को refer करने के लिए arrayname और square brackets में index लिखें इसे करने का प्रयास करते हैं
एक बार फिर से code पर जाएं
closing curly brace के आगे cursor रखें
enter दबाएं और type करें print space day square brackets में 6
code सेव करें
ctrl alt और t कीज दबाकर terminal खोलें
cd command का उपयोग करके उस folder पर जाएं जिसमें आपने code files downloaded और extracted की है
awk type करें awk space hyphen small f space array _ intro awk
देखें हमें output friday मिला है
अब हम जाँचेंगे कि क्या कोई element किसी निश्चित index पर array में मौजूद है
इसके लिए हमें in operator का उपयोग करना होगा मैं इसे एक उदाहरण के साथ समझाती हूँ
editor window में code पर जाएं
print statement के अंत में cursor रखें और enter दबाएं फिर दिखाए अनुसार कोड टाइप करें
code सेव करें
मैंने दो if conditions जोड़ी
पहली if condition जाँचती है कि the index two day में मौजूद है
यदि हाँ तो समरूपी print statement निष्पादित होगी
फिर दूसरी condition जाँचती है कि क्या index seven day में मौजूद है यह print statement निष्पादित करेगा यदि यह true है
जैसा कि हम देख सकते हैं index two array में है और seven नहीं है
terminal पर जाएं पिछली निष्पादित कमांड को प्राप्त करने के लिए अप ऐरो की दबाएं
निष्पादन के लिए enter दबाएं
हमें अपेक्षित output प्राप्त होता है
हम अब code में कुछ अधिक बदलाव करेंगे यहाँ दिखाए गए अनुसार code अपडेट करें
day condition में 7 के नीचे मैंने एक और condition जोड़ी है
यह जाँचेगा कि क्या index seven की value null है या नहीं
यदि true है तो यह index 7 is not null print करेगा
हम पहले से ही जानते हैं कि हमारे पास 7 के साथ कोई index नहीं है अतः यह कुछ भी print नहीं करेगा
अब हमने day में condition 7 का print statement बदला
code सेव करें देखते हैं क्या होता है जब हम code का निष्पादन करते हैं
terminal पर जाएं पिछली निष्पादित कमांड को प्राप्त करने के लिए अप ऐरो की दबाएं
निष्पादन के लिए enter दबाएं
हमें अनपेक्षित output प्राप्त होता है
statement index 7 is present after null comparison printed होता है
जब हम लिखते हैं day 7 not equal to null तो हम index 7 में element access करने की कोशिश कर रहे हैं
यह access खुद ही index 7 में पहले एक element बनायेगा और null value के साथ इसे इनिशीलाइज करेगा
आगे हम जाँचने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में कोई element index 7 में मौजूद है
क्योंकि null element पहले ही बन गया है output दर्शाता है कि index 7 null comparison के बाद मौजूद है
अतः इसे याद रखें day at index 7 not equal to null एलिमेंट की मौजूदगी जाँचने के लिए गलत तरीका है
यह index 7 में null element बनायेगा
इसके बजाय हमें in operator का उपयोग करना चाहिए
यह array में कोई अतिरिक्त element नहीं बनायेगा
in this tutorial we learnt aboutइस tutorial में हमने सीखा awk में arrays
array elements असाइन करना
यह अन्य programming भाषाओं के arrays से भिन्न कैसे है
एक array के elements को refer करना
नियतकार्य के रूप में array flowercolor को परिभाषित करें
index फूलों के names होंगे
value फूलों का समरूपी रंग होगा
अपने पसंद के किन्हीं पाँच फूलों के लिए प्रविष्टियाँ प्रविष्ट करें
चौथे फूल का रंग print करें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial project team spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने पर प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया इस forum में अपनी समयबद्ध queries post करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस मिशन पर अधिक जानकारी दिखाए गए लिंक पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद